खाने पीने का सामान मिलता है हर कोई खरीद सकता --.

और भी पूछो ये एक ट्रैन है और यहाँ पर --

आती है यहाँ पर ये एक नदी है |